जिस भी एक अंकल बैठे हुए है। ये एक फ़ोन पे बात करते जा रहा है और एक कार है।

इस इमेज मे हमे यहा पे दुकान दिखाई दे रही है जिसमे लकड़ीयों के समान बेचे जा रहा है लकड़ीयों मे ढोलक इसके अलावा कुछ खिलौने वगैरा --

जिसके उपर छत पे ये लोग योग कर रहे है और यहा पे बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए है हमेऔर इसके अलावा स्काय भी दिखाया गया है स्काय मै हमे व्हाईट कलर दिखाई दे रहा है।

अँड यहाँ पे जो फंक्शन चल रहा है उसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टीसिपेट किया है।

उपर ब्लॅक कलर का कैप पहना हुआ है इस लडकेने एक चश्मा भी पहना हुआ है ये ट्रांसपरान्त चश्मा इसने पहना हुआ--

इन पोस्टर में फोटो लागी हुवी है और अ अ याह पे एक अंकल खडे हुवे है जिन्होने व्हाईट कलर का टी-शर्ट पेहेना हुवा है।

इस इमेज में हुमे सलून दिखाया गया है। सलून में याहा पर काच लागा हुआ है। इसके उपर डेकोरेशन कि गाई है।

यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। जिसने ग्ली ग्रीन कलर की शाडी पहनी हुई है। एंड अं यहाँ पे मुकुट पहनाया गया है। यहाँ पे हमें कुछ भीड़ भी दिखाई गयी है। जिसमें यहाँ पे लड़कियां है। दिखाई गयी है।